ये एच.डी.एफ.सी. बैंक है।

ये बाइक शोरूम है जिसमें के एच.डी.एफ.सी. बैंक का बैनर लगा हुआ है। बहुत सा बाइक लगा हुआ है।